एक लड़की क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रही है बैट है।

शीशे के पास कुछ सजावट की गई है फूलों से।

एक बाइक लगा हुआ है जिसके ऊपर हेलमेट लगा हुआ है बगल में अमरूद का पेड़ दिखाई दे रहा है।

स्काई ब्लू और वाइट कलर का बहोत बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

दुकान के अंदर एक आदमी दिखाई दे रहा है रेड कलर की कुर्सी और कूट नजर आ रहे हैं।

गेट खुला हुआ है खिड़की दिखाई दे रही है।

उसके पीछे एक आदमी डंबल उठता हुआ नजर आ रहा है।